यहां पर हरि हरि खांसी हुई हुई है।

कोचिंग सेंटर लग रहा है जहाँ पे इंगलिश स्पीकिंग कोर्स सिखाया जाता है।

यह एक जे_सी_बी मशीन है जो खुदाई करने के काम में आती है यह मशीन बहुत ही महंगी बिकती है।

इसमें लाइटें अत्यंत अधिक लगी हुई हैं देखने से लग रहा है कि आज --

यह एक शाम का समय है। यहाँ सूर्य भगवान ढलान पर है। सामने एक सुंदर-सा ब्रिज दिख रहा है।

गांव की सभी महिलाएं बच्चे और बुजुर्ग और युवा --

उम् दो अ लेबर काम कर रहे हैं। यह छत तुम्हे बने बने हुए क्रैको को --

जहां कुछ वहां की भाषा में लिखा हुआ है चर्च के अंदर आज कोई प्रोग्राम है।

बना हुआ है। उसके सामने बहुत सी मोटरसाइकिले खड़ी हैं। एक जे_सी_बी भी खड़ी है।

यह एक चिड़िया घर का मेन गेट सा लग रहा है।

यह कोई कॉपी किताब की दुकान है जहां पे सभी विषयों की किताबें अलग-अलग रैक में रखी हुई हैं।